और ये बहुत ही अच्छा है ये कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमे प्लस मीन्स क्रिस्चियन का कोई प्रोग्राम है जिसमे बैलूंस वगैरा लगे हुए हैं और ड्रम वाले भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग इसे बैठ के सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं बहुत ही अच्छा दृश्य है और इसमें जो कुर्सी भी लगे --

ये मॉल है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है और कुछ लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं और ये मॉल का बहुत ही अच्छा दृश्य है और इसमें कुछ टैग लगा हुआ है कुछ में फोटो वगरह कुछ रेंज वगरह दिया हुआ है इतना से इतना रेंज का कपड़ा है इसमें और जो लोग खरीदारी करना चाहे तो वहां जा सक --